ये जो आप तस्वीर देख रहे है हैं ये तस्वीर एक मस्जिद की तस्वीर है जहां पर कि काफ़ी सारे बिछी --

ये जो हम तस्वीर देख रहे है इस तस्वीर में हम देख रहे है कि यहां पर एक बुद्धा चैरिटी का एक मतलब दांए जिसके हाथ में कुछ उतना मतलब कुछ है।

और दो एंपायर है एक लग एंपायर एक स्टेड एंपायर ।

और यहाँ पर बहुत सारा सामान है कि किराना स्टोर है जहाँ पर कि हर सामान --

तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर दो गाड़ियां हैं।

जो के पाठशाला एक स्कूल के लिए ड्रेस आई है।

जिसमें के अवेंजर मूवी बनती है और एक दूसरा स्टूडियो है जिसमें के --